यहा पे बहुत शार बलून्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लू और वाइट हैं यहा पे कुछ पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं खिड़किया भी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसके दिवार का कलर वाइट और क्रीम है। यहाँ पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक गेट भी दिखाई दे रहा है। कुछ खम्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्लू का और ब्लैक कलर का कपड़े पहने रखे है और निचे जमीन भी दिखाई दे रहा है।

पानी की टंकिया भी दिखाई दे रही है जिसका कलर पर आसमान भी दिखाई दे रहा है और नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है यहाँ पे एक पानी की पाइप भी दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है और कुछ खम्भे भी दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं कुछ लाइटें भी दिखाई दे रही हैं। ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही --